बहोत सारी अलमारियां है जिसमें सामान रखा है बीच में बहोत सारे स्टैंड और रैक्स रखें हैं।

सामने की तरफ कुछ बॉक्स रखे जिसमें सामान है ये पूरी व्हाईट कलर --

पेड़ लगे हुए हैं पीछे कि तरफ बहोत सारे घर--

और सामने की तरफ ग्राउंड खालि है जहां बोहोत से पौधे लगे हैं पार्क में--

और इन जी नीचे जो टी शर्ट लगे हैं उसमें नीचे ग्रीन कलर --

जो व्हाइट और ब्लू कलर की है बाहर ग्राउंड से भी एक बाइक निकल रही है।

बैलून से डेकोरेशन किया गया है सामने टेबल है जिसपे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम रखे हैं।

पेड़ लगे हुए पीछे। एक व्हाईट कलर का रूम है।

अब पत्थर पड़े है जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के पत्थर है।

बहोत ही सुंदर हरियाली है छोटे पौधे भी लगे है।

पड़े हुए भी है जिनके आसपास घास लगी है कुछ बड़े पौधे भी लगे हैं।

यहां पर वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है जो दीवारें हैं।

और बहुत से गमले ग्रीन कलर के रखे हैं जिसमें--

बहोत सारे बंडल बना बनाकर रखी गई है सेट करके--

इसका जो फ्रंट गेट है वो कांच का है। अंदर की तरफ बहुत सारी टेबल चेयर और सामान है।

और रेड येलो लाइट लगी है अंदर की तरफ बहोत से लोग है बाहर की तरफ --

यहां पर एक दुकान है जो व्हाइट कलर की है जिसमें बहोत सारे ब्लैक कलर के--

ऊपर की तरफ बहुत सारे ब्राउन और वाइट कलर के बड़े बॉक्स रखे हैं।

ग्रीन रेड येलो कलर की बैठने के लिए और बहुत से पेड़ लगे हुए।

यहां पर एक नदी है और नदी के बीच में बहोत सारे बड़े बड़े--

यहां पर एक व्हाइट कलर का रूम बना है जिसमें बहोत सारी--

कुछ बहोत ही सुंदर गमले रखें जिसमें पौधे लगे हैं--

अह जो क्रेंस मशीनें होती है उससे खुदाई चल रही है।

यहां पूरी मिट्टी रेड कलर की है बहोत सारे लोग खड़े हैं।

फ्लावर्स रखे है टेबल पर कुछ लोग भी है ऊपर की तरफ सामने भी बहोत ही --

अंदर फूलों का डेकोरेशन किया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है।